पोल पे लाइट्स लगी हुई है।

ये रेलवे प्लेटफार्म है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चल रहै हैं।

इसके वॉल का कलर सफेद है और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ हैं।

यहाँ पे एक आदमी बैठे हुए है जिन्होने कैप पहना हुआ है।

इसके ऊपर में दो पिल्लर्स है और एक गुम्मद बना हुआ है।

यहाँ पे एक कमरा है जिसके अंदर काफी लोग खड़े है।

पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा लिखा हुआ है।

और नीचे फ्लोर पे ग्रीन कलर का कार्पेट लगा हुआ है ।

यहाँ दो लड़के खड़े है।

और एक पे सरद सौरभ लिखा हुआ हैं।

यहाँ पे बहुत सारी दुकाने है जिसमे अधिकतर कपड़े के दुकान है।